विद्यालय में बच्चे टेबल पर बैठकर पढ़ रहे हैं कुछ बच्चे जो है की--

वर्कर जो है की नीले कलर और सफेद कलर का ड्रेस मे काम कर रहे हैं फर्श साफ क्लीन दिख--

चित्र अंकित है। चंद्रशेखर आजाद गांधी जी सुभाष चंद्र बोस--